इस चित्र में हमें कुमार बुक हाउस दिख रहे है।

पास में एक बगीचा है। उसमें एक अ बोरी या कपड़ा र टांगा हुआ है।

इस चित्र में जिम दिख रहा है एक।

मशीन भी लगी हुई है नीचे मैट बिछी हुई है।

इसमें ए_सी लगी हुई है और टी शर्ट टंगी हुई है और लोवर भी टंगी हुई है।

डिश लगे हुए हैं जो दो हैं और नीचे लाइट लगी हुई जो खंभे बंधी हुई है।

इस फोटो में एक मंदिर दिखा है जो श्री श्री महाराज अगरसिंह जी का है।

इसें ये चित्र रोड का हुआ है यो हाईवे का है नेक्जा सर्विस ।

ये नेक्सा सर्विस एक एजेंसी है जो फोरव्हीलर की सर्विस करती है। इसी के पास में एक लाइट गई है। लाइट की लाइन गई है जो खंभा लगा हुआ है। व्हाइट कलर की एक कार दिख रही है और --

तीन यहां पे टू व्हीलर खड़े हुए हैं जो एक अवेंजर है।

इस चित्र में हमे स्पोर्ट टी शर्ट दिख रही है।

ये अलमारी पे रखी हुई हैं।

एक लेबर ऊपर चढ़ा हुआ है जो कॉलम भर रहा है।

पाइप पकड़े हुए हैं हाथ में उसकी घड़ी है।

व्हाइट कलर की एक ग्रीन कलर की है और दो सिल्वर कलर की हैं।

बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है।

एक सबसे ऊपर खड़ा हुआ है बच्चा--

इस चित्र में हमे एक बड़ा सा घर दिख रहा है।

यहां पे तोप रखी हुई है।

यहां पे बोर्ड लगा हुआ है विजिटिंग बोर्ड --

एक कस्टमर मैनू ले के काउंटर पे आ रहा है एक लेडिस बैठी हुई है।

इस चित्र में हमें एक लाइब्रेरी या ऑफिस है।

एक लड़का इसमें पढ़ाई कर रहा है जो ब्लू कलर की टी शर्ट पहने हुए हैं।

बर्थडे पार्टी का लग रहा है।

एक हाल है जिसमें बहोत सी कुर्सियां पड़ी हैं।

ये स्कूल का नाम अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी है।

ये केसर बाग लखनऊ में है।

इसमें कुछ लोग और कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं।